जिसके सामने में एक महिला मुँह पे कपड़ा बांधे खड़ी है। पीछे एक बहुत बड़ा काले रंग का हाथी का स्टेचू बना है।

नरंगी और पीले रंग की बहोत सारी चेयर रखी हुई है। स्टेज के ऊपर में बीच में लाल कलर के तीन बड़े-बड़े पट्टे बने हुए हैं।

और उसकी बॉडी दिख रही है। वह अपने राइट हैंड साइड में देख रहा है। पीछे एक अन्य व्यक्ति --

सामने एक मोटरसाइकिल के ऊपर हरे रंग का टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति बैठा है।

और उसके सामने एक सफेद कलर का जनरेटर का बॉक्स दिख रहा है।

जिसके पीछे में एक सफेद कलर का स्टेपनी टाइप का कुछ बना है।

यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे जमींन पर बैठे हैं उनके ऊपर छाव है।